एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं.

इसमें एक नाम शो कर रहा हे जो मेरे समज से परे हे.

और एक पुरोहित है जो इस विवाह को संपन्न करा रहे हैं.

दुकानदार एक लड़के के बाल काट रहे है.

और इस सेलून मे कुछ लोग आगे बैठे हुए हे.

और इसमें एक पारदर्शि आइना का प्रतिबिम्ब बन रहा है.

मैदान के बीचो बिच पिच है.

इस इस्कूल में विवेकानंद ऑडिटोरियम को दर्शाया गया है.

एक आदमी वहां से जाते हुई दिख रहे हे.

ये एक गुलाब के फूलों का नर्सेरी है.

यह एक गेराज है.

और यहाँ कार रिपेयरिंग हो रही हे.

यह एक सब्जी बजार है।

बड़े बड़े पेड़ आसपास किनारे लगे हुए हैं.

ये एक ए .टी .एम बैंक है।

लाल और सफेद बेलून से ऑफिस को सजाया गया है.